सीढिया बनी हुई है तथा ये मैदान पूरी तरह से बाउंड्री तथा इस मैदान के बीच में एक रास्ता भी है जिसपे आदमी चल रहे है।

सामने हमे बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है इस मैदान के किनारे-किनारे बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे--

कुछ टॅक्सी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है तथा बहुत से बाइक और टॅक्सी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

जो की काफी हरे भरे दिखाई दे रहे है तथा इस पेड़ के नीचे दो पोस्टर भी लगे हुए है इसमे आइकर विभाग आवासी परिसर लिखा हुआ है।

वहा टेबल लगे हुए है जिस पर कई लोग एकत्रित हुए दिखाई दे रहे है हॉल के बाहर कही सारे नारियल के पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

सामने हमे एक बडीसी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग के अंदर का सीन इस चित्र मे दिखाई दे रहा है।

सामने हमे बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है इस नदी के किनारे मे एक बड़ी सी नाव रखी हुई है ईस नाव पर बहोत --